और ऊपर से लाइट साइट भी जल रहा हैं यहाँ बहोत सारा सामान जैसे यहाँ पे--

और सड़क दिखाई दे रहा है और भी जल के दिखाई दे रहा है बाहर में--

यहां पे हमको दिखाई दे रहा है यहां पे बहुत बड़ा सा शॉप का अंदर है यहां में।

को दिखाई दे रहे हैं यहां में आगे में एक इंसान प्लास्टिक बिछा के यहां में मछली बेच के यहां में--

यहां पे हमको दिखाई दे रहा है यहां में एक लड़का है जो व्हाइट शर्ट पहन के और उसका माथा में कुछ सामान पकड़ के है।

यह एक बिल्डिंग है जो कि इटा से बनाया हुआ है आधा बना के--

जोकि ए_पी_एस_एस_सी लिख के और लाइट भी जल रहा है फिर ऊपर से पंखा भी दिखाई दे रहे है।

वॉल सब में भी फोटो फ्रेम दिखाई दे रहा है।

ओ फूल पत्ती दिखाई दे रहा है उधर साइड में बहुत सारा सामान दिखाई दे रहे हैं खाली भी दिखाई दे रहे हैं।

इधर साइड साइड में हैंगर में टंगा के लाइन से रखा अलग अलग कलर का और नीचे भी ऐसे रखा हुआ है।

सामान सब दिखाई दे रहे है फ्लावर सब रखें है दिखाई दे--

यहां में हमको दिखाई दे रहा है यहां में एक सुंदर सी जगह है यहां में एक साइन बोर्ड जैसा लगा के रखा हुआ है।

बड़ा बड़ा सा यहाँ पेड़ दिखाई दे रहा है उधर मे बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आसमान भी दिखाई दे रहा है पहाड़--

यहां बंबू दिखाई दे रहे यहां में सुन्दर सा यहाँ मे प्लेग्राउंड है।

ऊपर से बहोत सारा यहां में टंगाके लाइट जल रहे--

कुर्सी सब बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं टेबल सब--

उसका ऊपर बोतल सब दिखाई दे रहा है अलग सामान सब दिखाई गया है।

यहां में हमको दिखाई दे रहे यहां में कुछ बड़ा सा यहां में।

और इंसान लोग भी भीड़ दिखाई दे रहा है ऊपर वायरिंग दिखाई दे रहा है आसमान भी दिखाई दे रहा है।

लेफ्ट साइड में खोला हुआ दुकान जो की बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है बिस्किट वगैरा कुछ पैकेट्स में बहुत सारा दिखाई दे रहा।

एक बैनर में कुरियर एंड पार्सल ऑफिस लिख के भी है।

अलग अलग कपड़ा पेहेन के है यहां मे कुछ हॉस्पिटल का अंदर है शायद यहां में मास्क पहन के हैं ऊपर कुछ--

में दो लड़का खड़ा होके भी है और एक बच्चा पीछे बैठ के भी है।

और यहां में एक चप्पल भी उतार के रखा है यहा मे।

और यहां पे प्लेन से ज्यादा बहुत सारा यहां पे छोटा छोटा पेड़ सब दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है यहां पे दो पेड़ के बीच मे--

बच्चा दिखाई दे रहा खड़ा होके और नीचे में जमीन मिट्टी दिखाई दे रहा है।

यहां पे हमको दिखाई दे रहा हैं सफेद और या में ग्रे कलर के यहां में पैरेट जैसा पाँच या में दिखाई दे रहे हैं उसका नीचे भी--

यहां में हमको दिखाई दे रहा है यहा में बड़ा सा बंगला का अंदर है यहां में लाइन लाइन लाइन से हमें पोस दिखाई दे रहा है।

जो कि ऊपर में व्हाइट से पेंट करके है और नीचे में ब्लैक से और पोस का ऊपर में किताब सब सामान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और ऊपर में--

दिखाई दे रहे है और बहुत सारा यहां में साइड में खिड़कियां भी दिखाई दे रहे है से।

लड़की है एक लड़का एक लड़का तबला कुछ म्यूजिक बजा रहा है और बीच लड़कीयाने गाना गा रहे है माइक में।

इनमें कुछ बैनर लगा के है चेयर सब दिखाई दे रहा है।

हमको दिखाई दे रहा है यहां में एक औरत दिखाई दे रहा है।

ये हमको दिखाई दे रहा है यहां में एक रूम दिखाई दे रहा है एक रूम का अंदर में बहुत सारा--

ब्यूटी पार्लर है यहां पे बहोत बड़ा बड़ा सा यहां पे ब्लैक कलर का सोफा दिखाइ दे रहा है।

यहां में दिखाई दे रहे हैं हमको बहुत सारा बच्चा लोग दिखाई दे रहा है बैठ के यहां में।

का सामने में एक रेड कलर के चेयर भी दिखाई दे रहे हैं और व्हाइट बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे हमको दिखाई दे रहा है यहा में एक दुकान का अंदर है।

से पंखा भी दिखाई दे रहे है लाइट भी जल रहे है।

आदमी दिखाई दे रहा है आपको यहां पे बड़ा सा सुंदर सा यहां में कुछ हॉल सजा के हैं।